जिसमें बहोत सारे झूमर लगे हुए हैं रंग बिरंगे सामने एक मूर्ति बनी हुई है जो कि एक कांच के बॉक्स के अंदर रखी हुई है।

सामने बहुत सारे लोग हैं जो की बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं जो की खड़े हुए हैं कुछ लड़कियाँ हैं कुछ औरत हैं कुछ आदमी लोग हैं।

पार्क है पार्क मे बहुत सारे लड़किया और लड़के है | जोकी सभी मेट के ऊपर अपना योगा कर रहे है | सभी अ हाथों से और पैरो से अपने जिस शरीर को ऊपर की और उठाए हुए है।

और बगल में दो आदमी है वो भी फूलों को तोड़ रहें हैं और पीछे एक बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहें हैं।